यहाँ पे सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ पर यहाँ पर डेकोरेशन वगेरा की हुए है और यहाँ पे लाइट्स लगे हुई है साइड में परदे लगे हुए हे और यहाँ पर टेंट लगा हुए है तो यहाँ पर कौई शादी हैं।

और ऊपर बादल दिखाई दे रहे है नीचे मिट्टी दिख रही है ग्रीन कलर में घास भी दिखाई दे रही है ।

ऊपर फैन लगा हुआ है और लाइट भी लगी हुई है और यहाँ पे जो दीवाल है उसमे सफ़ेद कलर पेंट किया हुआ है।